ये परोट कलर तथा वाइट कलर कलरड है इसमें बहुत सारे पेड़ भी नज़र आ रहे हैं खुला आसमान नज़र आ रहा--

बहुत से लोग नजर आ रहे है जहां शायद एक पार्टी चल रही है लाइट्स नजर आ रही है बिल्डिंग्स नजर आ रही खुला आसमान नजर आ रहा रात का समय है।

और खुला आसमान नज़र आ रहा है। ये किला बहुत ही सुन्दर दिखाई दे रहा है। मैदान भी है इस किले --

इस पिक में एक सिटी के अंदर बहुत ज्यादा पानी भरा सड़कों पर भी पानी नजर आ रहा है उस पानी में से कुछ व्यक्ति भी गुजर रहे है।

ये पिक एक एयरपोर्ट की है जिसमें एक एयरोप्लेन नज़र आ रहा है तथा इससे यात्रीगण नीचे उतर रहे हैं | एक लेडीज बच्चे को रखे हुए है।

जिनमे अलग-अलग चम्मच भी लगी है एक पेप्सी की बॉटल भी नजर आ रही है दो ग्लास नज़र आ रहे है टिसु पेपर --

तीन-चार कुर्सियां भी नजर आ रही है तथा एक भी नज़र आ रही है | स्टूल नज़र आ रहा है | पर्दे भी नज़र आ रहे हैं | पंखा भी दिखाई दे रहा है | एक व्यक्ति भी खड़ा है।